मैरेज हॉल की है यहां स्टेज पर दूल्हा दुल्हन नाच रहे हैं ऊपर--

इस फोटो में ये एक रेस्टोरेंट की फोटो है यहां पर काले रंग की कुर्सियां और काले रंग का टेबल पड़ा है।

ट्रेनिंग कर रहे हैं जोकि निशाना लगाना सीख रहे हैं यहां पीछे बहोत बड़ी बिल्डिंग हैं।

सोनी इंटेक्स एल_जी कंपनी की है यहां पैनासोनिक का बोर्ड लगा है अंदर--

पीले पीले लाइटों की सजावट की गई है।

जिम की फोटो है यहां एक लड़का खड़े होके खड़े होके लड़का सेल्फी ले रहा हैं।